आदमी अलग अलग ड्रेस में कुछ व्हाइट ड्रेस में कुछ ब्लू ड्रेस में--

जो पिंक कलर में दिखाई दे रही हैं काफी लाइट्स भी दिखाई दे --

लकडी की अलमारी भी दिखाई दे रही हैं --

जैसा की दिखाई दे रहा है की यह एक मार्केट है सामने एक बोर्ड लगा हुआ जिस पर बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ दिखाई दे रहा है --

सामने एक नीले कलर का बोर्ड है जिस पर टाटा मोटर्स लिखा हुआ है एक टी_वी_एस लिखा हुआ बोर्ड लगा हुआ है सामने --

जमीन भी दिखाई दे रही है एक मकान पे डिश टी_वी लगा हुआ है।

सामने फिरोजी कलर की विंडो भी दिखाई दे रही है हरे भरे पेड़ काफी दिखाई दे रहे हैं।

जैसा की मैं देख पा रही हूं दिन का वक्त है और यहां एक गाड़ी है गाड़ी में एक आदमी स्टेज की तरह कुछ बना हुआ है फूलों से सजा हुआ है उस पे बैठा हुआ है।

एक कारपेट जमीन पर बिछा हुआ है उसमें तीन-चार औरतें बैठी हुई है एक आदमी खड़ा है उसके जस्ट आगे--

और यहाँ एक पेड़ भी नजर आ रहा है और छोटे छोटे घास भी नजर आ रहे हैं पानी पे उसकी परछाई भी पड़ रही है पोल भी नजर आ रहा है आस पास --

बोर्ड पे जो कलर दिखाय दे रहा है व येलो ऑरेंज पे दिखाय दे रहा है आस-पास एक दुकान नजर आ रहा है उसके आगे एक बाइक है।

जैसा की मैं देख पा रही हूँ दिन का वक़्त है और यहाँ एक गाड़ी खड़ा है बाइक का नंबर है सिक्स फाइव ज़ीरो थ्री और --

आदमी कुछ कर रहा है गाड़ियों के साथ एक टेबल लगा हुआ है एक गाड़ी की मशीन नजर आ रही है जमीन है एक आदमी ग्रे कलर का पैजमा पहना हु--

कुछ चेयर रखा हुआ है अ स एक बोर्ड है जमीन पे है लड़कियां है कुछ लड़किया ब्‍हाईट कलर के कपड़े पहने हुए हैं कुछ --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह दिन का वक्‍त है और यहां बहुत सारा साइकल बच्‍चों का रक्‍खा हुआ है कुछ अलग-अलग तरह के साइकिल है एक साइकल --

कुछ रखा हुआ है एक आदमी जा रहा है अंदर की तरफ।

बैठने का बनाया गया है जमीन पे जो ईंट लगे हुए हैं वो अलग-अलग कलर के ईंट है कुछ येलो है कुछ रेड है।

यहां पे बहुत अलग-अलग तरह की चीजें मिल रही हैं एक बैठने की चेयर लगी हुई है रेड कलर का बाल्‍टी लगा हुआ है एक बॉटल रखा हुआ है एक --

पेहनावा एक बच्ची बैठी हुई हैं एक लडका बच्चा खडा हैं वहा पे दिवार ' का कलर व्हाइट हैं --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं दिन का वक्त है और ये एक वाइट कलर का पेंट किया हुआ बिल्डिंग नजर आ रहा है इसमें वाइट एक पंखा नजर आ रहा है।

यहां पर एक स स्‍टोर भी दिखाई दे रहा है एक यहां पे ग्रिल नजर आ रहा है ग्रिल का कलर है ब्‍लैक कलर का पूरा बिल्डिंग ब्‍हाईट कलर का पेंट किया हुआ है एक इस --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं दिन का वक्त है और यहां पे बहुत सारे घास दिखाई दे रहे हैं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ दिन का वक़्त है ओ और यहां पेड़ भी दिखाई दे रहा है एक लड़का दिखाई दे रहा है लड़के--

भी है एक ऑरेंज कलर साड़ी पहनी हुई एक औरत है यहां सीढ़ी के तरफ कुछ डिजाइन बना हुआ है।

एक स्‍वेटर पिंक और ब्‍लैक कलर का है एक स्‍वेटर ऑरेन्‍ज और ब्‍लै‍क का कॉमीनेशन है एक ग्रीन कलर का है एक स्‍काय और ब्‍लैक कलर का है ।

वाइट और डी एस एल आर में एक औरत सेल्फी ले रही है यहां पे एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी हुई है ग्रीन कलर की एक औरत है एक घड़ी लगाए हुए एक लड़के का हाथ दिख रहा है ।